यहाँ पर एक आदमी आ रहें हैं। इस सड़क के दोनों किनारे मैदान है।

यहाँ पर चौंकी है जो लोहे की बनी हुई है ।

यहाँ पर सेल लगा हुआ है यहाँ पर सभी सामान को आधे दाम में मिलते हैं।

यहाँ तरह-तरह के मिठाई लड्डू बिकते हैं।

इस विदी विश्वविद्यालय काफ़ी ऊँचा एवं काफी बड़ा है इस पर बहुत से कमरे हैं।

इस बस के किनारे बड़े-बड़े पेड़ भी हैं ई यहाँ पर गाड़ी काले रंग की है।

ये यह नदी काफ़ी बड़ी है। इस नदी पर एक पुल भी है।

ई इस मैदान में बहुत सारे बच्चे भी हैं इस मैदान में घास भी है यहाँ छोटे-छोटे पौधे --

इम्म यहाँ पर एक ग्राउंड भी है। इस ग्राउंड में बड़े-बड़े पेड़ भी है।

इस ग्राउंड के बगल में बड़े-बड़े --